यहां पर देखिए अलग अलग प्रकार के हेलमेट भी रखे हुए है।

ये जिम का काम हो रहा है यहां पर जिम होती है।

साइड में भी ये एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

दो चेयर रखी हुई है।

यहां पर देखिए ये एक दुकान है एयर कट होने की।

कांच का एक शीशा है ये एक दुकान है यहां पर बहुत सारे स्वीट्स रखे हुए हैं।

यहां पे देखिए लेडीज बैलून ले रही है।

कितना अच्छा सजावट की हुई है येलो कलर से और रेड कलर से ऑरेंज कलर से।

पेंट भी बहोत अच्छा है यहां पे इस हॉल में लाइट्से भी लगी हुई है।

पेड़ पौधे हैं नीला आसमान है।

और देखिए कितना अच्छा हरा भरा गार्डन है।

यहां पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ़ ए_टी_एम --